जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं ये एक बड़ा सा समुद्र नजर आ रहा है और समुद्र के पास कुछ --

लोग खड़े नजर आ रहे हैं और साथ में पानी में दो पानी वाले जहाज भी खड़े नजर आ रहे हैं।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

ऊँचे ऊँचे पेड़ भी नजर आ रहे है आसमान पर हल्की हल्की से बादल भी छाए हुए और बस के पास दो लोग खड़े नजर आ रहे है।

जैसा कि इस दृश्य में मैं देख पा रही हूं ये एक बहुत बड़ी सी दुकान है दुकान के बाहर बहुत सारा सामान रखा नजर आ रहा है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं ये एक घना सा --

पेड़ों का स्थान नजर आ रहा है यहां पर कुछ झूले नजर आ रहे हैं और जमीन पर हरी भरी घास भी नजर आ रही है।

और पास में ही वहां पर एक एटीएम भी नजर आ रहा है और साथ में यहां पर कुछ हरे भरे से पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

जैसा कि मुझे यहां पर इस दृश्य में नजर आ रहा है ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में नीचे कुछ दिखाने बनी हुई नजर आ रही है।

और यहां पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहां पर देखिए कुछ कार भी खड़ी हुई है सामने से आने जाने की एक रोड भी दी हुई है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं ये एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें कि --

तस्वीर मैं देख पा रही हूँ ये एक मकान नजर आ रहा है और यहाँ पर मदर ऑफ़ गुड कान्वेंट का --

जैसा की इस दृश्य में मै देख पा रही हू ये एक दूकान नजर आ रही है और दूकान के बाहर --

इस दृश्य में देख पा रही हूँ ऊँचे पहाड़ी से एक बहता हुआ झरना दिखाई पड़ रहा है पहाड़ी पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

और यहां पर नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जिस पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर देखिए अंदर बहुत सारी लाइट दिखाई दे रही है।

जैसा कि इस दृश्य में मैं देख पा रही हूं ये एक मैरिज हॉल है मैरिज हॉल के बाहर बहुत सारी भीड़ है और देखिए यहां पर --

जो है नदी के पानी पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और साथ में ही यहां पर बहुत सारी नाव है।

इस दॄश्य में दिख पा रही हु एक रेल्वे स्टेशन का रेल्वे प्लेटफॉर्म है यहापर देखए तीन कुत्ते है।

इस दृश्य में मैं देख पा रही हूं ये एक बहुत सुंदर सा तस्वीर है और यहां पर दो बसें भी हैं इस तस्वीर में --

साथ में यहाँ पर कुछ पेड़ भी नज़र आ रहा है पानी में सूर्य की रोशनी पड़ रही है और यहाँ पर नाव भी नज़र आ आ रही है।

में यहा पर देख पा रही हु ये एक उची सी बिल्डिंग है और बाहर एक बोर्ड है।

इस दॄश्य में दिख पा रही हु ये एक दुकान है और दुकान पर एक व्हाइट क्लाउड का बोर्ड लगा हुआ है।

इस दृश्य में मैं देख पा रही हू ये एक फार्म हाउस की तस्वीर है जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है और यहा पर देखिये छोटी छोटी झोपड़ियां भी है।

यह मेरे सामने एक टी.वी. लगा हुआ है और अल्मारियो बहुत सी किताबे लग हुई है कुछ किताबे टेबल पर रखी हुई है।

इस दृश्य में मैं देख पा रही हु दो बसे खड़े है और एक बस में एक आदमी चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है जिनके हाथ में एक बॅग और एक पीट पे बॅग टंगा हुआ है।

गेट के बाहर की तरफ कुछ छोटे-छोटे पेड़ और पीछे की तरफ से कुछ बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में मैं देख पा रही हूं ये एक रेस्टोरेंट या कैफे की तस्वीर है जिसमें बैठने के लिए कुर्सियां और टेबल लगी हुई हैं साथ में --

लिखा हुआ है दुकानों के शटर बंद है उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं।

और यहां पर एक स्टैचू लगा हुआ है और नीचे की तरफ से एक लाइट की रोशनी आ रही है।

इस द्र्श्य में मैं देख पा रही हूँ ये एक सलून है जिसका नाम डेनिम सलून पड़ा हुआ है और यहाँ --